लोग दिखाई दे रहे है और काफी जलती हुई लाइट्स दिखाई दे रही है कुछ बड़े-बड़े से पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें एक कैफ़े जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें एक काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर --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

खम्भे दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें एक बड़ा-सा डॉयनिंग टेबल जैसे दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारे कढ़ाई रखे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ लोग भी है।

दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हमे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जिस पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमे कुछ लगा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा है और पीछे हमे--

यहाँ पर हमे धुप की रौशनी भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है।